जिसने पीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है तथा डाक घर के डब्बे का रंग कत्थई दिखाई दे रहा है एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

यहाँ द्रश्य जिम का दिखाई दे रहा है टीन के शेड से बना हुआ दिखाई दे रहा है जहां ग्रीन कलर की नेट डली हुई दिखाई दे रही है।

यह दृश्य एक तालाब का दिखाई दे रहा है जा जिसके सामने एक मैदान है जहाँ तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

पर्दा दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है तथा टॉवल भी दिखाई दे रहा है और एक पानी की टंकी भी नज़र आ रही है स्टूल भी नज़र आ --

यह द्रश्य एक डांस का दिखाई दे रहा है जहां पाँच लड़कियां डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक मुर्गा दिखाई दे रहा है जिसका रंग ब्लैक और ब्राउन दिखाई दे रहा है।

नल दिख रहा है जिससे एक व्यक्ति पानी पीते हुए दिख रहा है एक घर भी दिखाई दे रहा है।